और यहां पे प्लंबर का पूरा काम हो रहा है।

और ये एक लेडीज बैठी हुई हैं और जेंट्स है वो खड़ा हुआ है इधर सो पैर में मोजा है नज़ारा बड़ा ही सुंदर इधर का दिख रहा है आप देख सकते हो।

यहां पे जैसे पिंक कलर में ब्लू कलर में ऑयल जैसे मिट्टी का तेल जैसे लग रहा है।

और सोनपुर का हैं यहां दीवार मंदिर हैं यहां सामने उधर प्रणाम भी लिखा हैं।

यहां पे कुछ लोग शादी के जोड़े में एक लोग हैं और यहां पे व्हाइट ड्रेस में ये शादी हो रहा है।

ये कप केक है जो देखने में ज्यादा खूबसूरत हैं इसका टेस्ट भी काफी बेटर है और इस पे स्वीट्स भी ऊपर से डले हुएं हैं।